चल रहा है इस बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

फोटो खिंचवा रहा है इस लड़के ने फुल सूट पहना हुआ है।

उस वैन को फोम से वाश किया जा रहा है उस वैन का कलर ब्लैक है।

मुझे इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर का गेट दिखाई दे रहा है इस गेट पर एक पोस्टर लगा हुआ हैं।

इस पोस्टर पर लिखा है लॉन्ड्री लैब ।

मुझे इस चित्र मे एक चर्च दिखाई दे रहा है यह चर्च व्हाइट कलर का है।

इस बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग के पास एक बाउंड्री बॉल लगी हुई है।

मुझे इस चित्र में एक ऑफिस नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

ऑरेंज कलर है इस मंदिर से लगी हुई बाउंड्री वॉल है।

इस दुकान के अंदर एक फ्रिज भी लगी हुई है।